यहाँ पर एक प्राचीन चंडी माता मंदिर की एक पिक्चर दिखाई गई है ।

जो की काफी साफ़ सुथरा दिखाई देरा है इसमें येह भी एक हरियाली--

अ हरियाली जेसे माहोल में बना हुआ मंदिर है।

पार्किंग बनी हुई है एक पेड़ लगा हुआ है।

क्योंकि इसमें कुछ बच्चों ने झंडे लिए हुए हैं और--

और इसमें एक ही दूकानदार दिखाई दे रहा है और एक महिलाएं इनसे चादरे खरीदने भी आई हुई है।

और जिसमे से एक गुलाबी सूट वाली है इसने अपने बालों को --

इसमें हरे सूट वाली है उसने अपने बालों पर कर्ल डलवाए हैं।

इसमें ये सेल्फी ले रहा है एक छोटे बच्चे के साथ बाकी सब पीछे बेठे दिखाई दे रहे है दूर दूर--

ये एक सेमीनार की तरह दिखाई पड़ता है जिसमे बोहोत सारे कुर्सिया टेबल लगे हुए है।

और इसमे बहुत अच्छा वातावरण दिखाया गया है बहुत साफ सफाई है ।

और यह एक काफी बहुत बड़े एरिया मे दिखाई पड रहा है जिसमे कलीन बिछे हुए है ।

येह एक सरकारी दफ्तर की तरह दिखाई पड़ता है जिसमे--

के इनके दरवाजो का रंग जो हे नीला है वो नीला है और वाईट कलर हे ए सफेद किया हुआ है और फर्स भी साफ सुथरा दिखाई दे रहा रहा है।

और यहां पे तार दिखाई दे रही है दरवाजे दिखाई दे रहे है खिड़कियां है खिड़कियों में सरियो के वो लगे हुए है।

साइड मे भी हमे कार कारों का कुछ व्यू देखने को मिल रहा है और एक नेक्ससीरम का कोई --

और ये सामने एक ड्राइव करने के लिए राइड के लिए हमे दिखाई दे रहा है जिसमे चार सीटें हैं ।

ये एक रास्त्रो रेस्टोरेंट की फ़ो-फोटो है जिसका नाम है।

ये एक हॉस्पिटल की फोटो दिखाई दे रही है इसमें एक लाल रंग की खेडकी दिखाई दे रही है सामने एक महिला --

ब्लू पर्स दिखाई दे रही है काफी सुन्दर चेयर्स लगी हुई है सोफे लगे हुए है --

और एक बहुत सुन्दर कार्पेट बिछा हुआ है।

यह एक शिव शक्ति की मंदिर की फोटो है जिसकी सामने गद्र्वाईस पर दोनों साइट गणेश जी की फोटो लगी हुई है मुर्तिया--

बहुत सारे सूखे पत्ते गिरे हए है और दिखाई दे रही है कुछ --

और यह काफी हरे पत्तेदार वृक्ष हैं।

और येह जंगल की फोटो दिखाई देरी है जिसमे--

और कर धोने के लिए दी गयी है जिसमे एक मनुष्य --

ये एक किसी स्कूल की फोटो दिखाई दे रही है जिसका गेट नंबर दो में दिखाई पड़ता है।

और दो आदमी आपस में बात कर रहे है।

और येह इसमें काफी--

और कुछ खेलने के ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

और जेसे की द्रिश्य दिखाई देरा है की एक--

उसके जिसके साथ एक असिस्टेंट भी है और यहां काफी तरह की बुक्स दिखाई पड़ रही हैं।

और गार्डन बहोत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है सामने जो इनका ओफीस है वेह भी बोत साफ सुथरा है और सिसो से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और दिखाई कण बहोत सुन्दर--

यह एक यामा बाईक का शो रुम दिखाई पड़ता है जिसमे काफी सारी एक्टिवा भी दिखाई दे रही है।

यह भी एक सर्विस की शॉप दिखाई दे रही है जिसमें एक कार धोने के लिए हैं और एक धुल चुकी है।

और काफी सुन्दर व्यू दिखाई दे रहा है और इसमें से--

और बच्चो बच्चे नही दिखाई देरे है जुलो पर--

इसमे एक पंखा लगा हुआ है और काफी लाइट्स जली हुई है जो की यह सामने से दिखाई दे रहा है की यह बहोत बड़ी शॉप होगी और इसमे काफी सारे कस्टमर गुम रहे है।

और प्री अ प्रिसठी निष्ठा स्टेट की भी--

काफी सारी फोटो है यहा पे सामने एक विक्ष दिखाई दे रहा है।

यह किसी ऑफिस की फोटो दिखाई देरही है इस्पे बोहोत र्तारह के केबिंस बने हुए है।

बोहोत साफ़ सफाई है और फर्श देखो कितना चमक रहा है क्युकी लाइट्स पद रही है ऊपर से --

यह एक सड़क की फोटो है जिसके सामने कोई लेमन ट्री नाम से कोई अ --

हम्म काफी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है कुछ तारे जा रही है कुछ --

येह किसी अदर स्टेट की फोटो दिखाई पड़ती है जिसमे--

अ जिसमे की काफी तरह की बलून लगाये हुए है जैसे की ग्रीन कलर की रेड कलर के वाईट कलर के ब्लू कलर का टेंट लगा है।

और काफी तारे है स्ताफी नज़र आरे है और छो--

अ मतलब लोग नज़र आ रहे है कुछ है जिन होने ड्रेस्सेस वेयर की हुई है और उसमे --